और दो से तीन यहाँ पर मैन गेट है जहा पर कुछ सामने स्कूटी खड़ी है.

यहाँ पे मैन डोर है पार्क बना हुआ है पार्क में बोहोत सारे पौधे और बड़े पेड़ लगे है सामने की तरफ।

बड़ी बिल्डिंगे है जो ब्राउन और लाईट ग्रीन कलर की है.

रेड कलर के बोहोत से डम्ब्बेल रखे बहोत से लोग भी है।

सामान भरा हुआ है एक व्यक्ति अंदर खड़े है साईड में लाईट पिंक और रेड कलर के पोस्टर लगे हुए है।

एक कोई शॉप है जो जिसपर व्हाईट ब्लू पोस्टर है।

ऊपर की तरफ ऑरेंज ब्लू बैलून लगे हुए है साईड में मिक्की माउस है.

यहाँ हर एक रूम है जो पूरा ही ब्राउन ब्लैक कलर का है जिसमे छत में और दीवारों पर --

ऊपर ऑरेंज कलर के पडदे लगे हुए है सामने की तरफ बोहोत सारी--

आसपास बोहोत सारे मैकेनिक है यहाँ पूरा यह स्टील सेट बना हुआ है।

रेड और व्हाईट कलर से पेंट किया गया है और आसपास बहोत से पौधे भी लगे है पीछे की तरफ यहाँ --

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जो व्हाईट येल्लो और ब्लू कलर का है बोहोत से लोग यहाँ खड़े है।

व्हाईट पोस्टर लगा है ऊपर कुछ ब्लैक पोस्टर भी लगा है।

यहाँ पर एक ए_ टी_ एम् है और फ़ेडरल बैंक है।

जिसका ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ है सामने से रोड है रोड पे से बोहोत सारे लोग जा रहे है।

इन्होने बोहोत ही सुंदर ट्रेडिशनल ड्रेस पेहनी है यहाँ पर ब्लू और लाईट ब्लू और रेड कलर की लाईट लगी हुई है।

यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे है जो चाय पी रहे है सामने रेड टेबल है।

यहाँ पर एक क्लास रूम है क्लास रूम में बोहोत सारे लकड़ी के टेबल और चेयर लगे है।

जिसपे बोहोत से लोग बैठे है जो एक्ज़ाम दे रहे है और दूसरी तरफ भी --

आस पास और भी शॉप के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए है.

और समाने की तरफ व्हाईट एक बड़ा पोस्टर लगा है जिसके सामने कुछ बाईक और एक रेड कलर का वाहन खड़ा है.

सामान रखा हुआ है यह पूरी व्हाईट कलर की है अलमारिया।

यहाँ पर एक ए_ टी_ एम् जो एच_ डी_ एफ_ सी बैंक का है जिसका ब्लू कलर का पोस्टर लगा है।

यहाँ पर इस स्टेज पर कुछ लडके और लडकिया परफॉर्मन्स कर रहे है पीछे की तरफ व्हाईट पडदे लगे हुए है।

और यह एक इनके हाथ में एक डिज़ाइन है जिसमें से ऑरेंज धुंआ निकल रहा है नीचे की तरफ भी यहाँ बोहोत से लोग --